और ये फ्लैट जैसा है बहुत सुन्दर है ।

इंफिनिटी है। ये बहुत सुन्दर है। तीन मंजिला बनाया हुआ है। इस पत्थल का है ये बहुत बढ़िया पेंट किया हुआ है।

बहुत अच्छे दिखाई देते हैं ।

रिपेयर के लिए आयी है यहाँ कुछ भी नहीं है खाली सामान है कोई आदमी नहीं है टायर - ट्यूब है साइड में गाड़ी में सामान ठीक करने वाला ऑइल है ।